व्यक्ति बैठा हुआ हैं वहाँ पर कुछ गाड़ी भी रखी हुई हैं एक साइकिल भी रखी हुई हैं एक रोड भी निकला हुआ दिखाई दे रहा हैं और दीवार के ऊपर कुछ पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक सड़क भी निकली हुई दिखाई दे रही--

हमे यहाँ पर एक किसी मकान का छत बनती हुई दिखाई दे रहा है जिसकी लेंठा गिट्टी बजरी सरिया से बन रहा है बोहत ज़्यादा लोहे का सरिया दिखाई दे रहा है।